और ऊपर में और कुछ लगा हुवा हैं केले पत्ते बंधे हुए हैं आइट साइड में--

तो कुछ खड्डे में रखे हुए हैं।

और यहां पे जूतियां भी रखी हुई है।

यहाँ पे बच्चे का टॉयज रखा हुआ है और यहाँ प्लास्टिक का खिलौना भी है यहाँ दो तीन ठो कार दिखाई दे रहा है।

समान है जो कि उनको खेलने में आसानी होती है।

और यहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है।

जा रहे हैं। एक लड़का है जो साइकिल पर है और एक बड़ा सा दो मंजिल का घर दिखाई दे रहा है।

और ऊपर बहोत सुंदर लाइटिंग हुई है।

है और बड़ा बड़ा लोहा का गेट बना हुआ है।

और यहां पे फोन पे वाला भी रखा हुआ है बुके रखी हुई है जो डॉक्टर है वो कुछ--

यहाँ एक घर है यहाँ पर लिखा है अमूंज पालिश --

से बिहारी लोग अपना पूजा कर रहे हैं और--

और उनको को खाने को भी दिया गया है।

यहाँ पे घर बनाया जा रहा हैं।

यहां लिखा हुआ है एक घड़ी का चित्र बना हुआ है।

यह एक बहोत बड़ा ग्राउंड है।

और नीचे में भी बहोत सारी चीजें रखें हुए हैं।

जहां का पानी बहोत सुंदर है।